यहां पर कुछ बादल भी है।

और यहां पर येलो और व्हाइट कलर की थीम दी हुई है।

जिस पर लिखा हुआ है हिमाचल प्रदेश।

और यहां पर एक प्लस का साइन भी बना हुआ है।

बहुत शारी लाईटें दिखाई दे रही हैं और यहां पर--

जैसे कि यहां पर बहोत सारी किताबें रखी हुई है।

तीन चार चेयरें भी दिखाई दे रही हैं और यहां पर--

और यहां पर दूर दूर तक कोई पेड़ उगा हुआ--